यह एक दूकान है। यह दूकान मेडिसिन का दूकान है जिसमे बोहोत सारे दवाईया रखी गयी हैं। कुछ दवाई का नाम है चेरी और बोहोत बहु सारे अलमारियाँ जो ये शीशा से पैक हैं।

ये एक दुकान है। दुकान में बोहोत सारे समान दिख रहे हैं।

और पीछे दो व्यक्ति दिख रहे हैं। यहाँ बैठने की जगह है और बोहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं जो हरे-भरे दिख रहे है। आसमान व्हाइट कलर के दिख --